यहां पर एक गाड़ी भी है।

सफेद और नीले रंग का छाता भी है।

एक बच्चा कुछ खरीद रहा है।

सीस दिखाई दे रही है।

की फोटो लग रही हैं।

दुकान लग रही है।

बहोत ही खूब सूरत है।

गमलों के पास एक व्हाइट टेबल भी दिख रही है।

का चित्र दिखाई दे रहा है।

टेबल नज़र आ रही है टेबल पर लोग भी दिख रहे--

है जो की नीले और--